कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं अध्यापिका ने गुलाबी रंग की साड़ी --

कुछ सूखे पेड़ नज़र आ रहा है। उसके कुछ दूरी पे हरे भरे पेड़ हैं। एक आदमी चित्र निकलते हुए दिखाई दे --

बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ पुलिस है। कुछ दरवाज़ों पे कुछ ऊ दरवाजे पे हैं।

कुछ दूरी पे बस नज़र आ रही है। एक बाइक नज़र आ रही है। जिसका रंग सफ़ेद और काले रंग का है। एक रिक्शा नज़र आ रही है।

दिए गए इमेज में बहुत बड़ी सी सड़क नज़र आ रही है।

जिसका रंग पीला है और बॉर्डर ब्राउन कलर का है। छत नी --

सब्जियां हैं हरी रंग की। कोभी नजर आ रही है। गाजर है और कुछ केलें हैं। कुछ दूरी पे --

और पीछे बहुत सारा भूसा रखा हुआ है। खिड़की है बड़ी सी।

कई इमेज में हमें अ बड़ी सी मछली बाजार नज़र आ रही है। जिसमे कुछ लोग मछलियां काटते हुए नज़र आ रही है। धोते हुए नज़र आ रहे हैं।

बोर्ड्स नजर आ रहे हैं जिसमें बर्गर वगैर बना हुआ है। कुछ लाईट्स हैं और पीछे काउन्टर है। ढेर सारे --

सामने एक बोर्ड है ग्रीन कलर का और फ्रेम है दिवाल है सफेद रंग की।

ध्यान कर रही हैं और पं बाबा बैठे हुए हैं। ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं। आसमान --